भगवान जी बुद्ध जी बैठे हुए है अगल-बगल सफ़ेद रंग के भगवान बुद्ध जी बैठे हुए है बीच मे कुछ डिज़ाइन बनी हुई है ऊपर हवा करने वाले दोन टंगे हुए दि--

मंदिर है जिसमे भगवान बुबुद्ध की प्रतिमा रखी हुयी है जिसमे तीन भगवान बुध्द जी बैठे हुए है अगल बगल छोटे भगवान बुध्द जी बैठे हुए है।

एक काउंटर बना हुआ है काउंटर मे काफ़ी सारी बॉक्सेस लगे हुए है एक लेडी खडी हुई है येल्लो और व्हाइट सुट पह--

बाहर इक रास्ता दिखाई दे रहा है उसमे बड़ा गेट लगा है उसमे एक चौड़ावाला गेट बंद है और पतला गेट खुला हुआ है।

एक चबूतरा बना हुआ है जिस मे एक मशाल रखी हुई दिखाई दे रही है एक बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है।

गेट है गेट के जाली बनी हुई है एक चबूतरा दिखाई दे रहा है कुछ पेड दिखाई दे रहे है ऊपर दो से तीन मंजिल की एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है ऊपर रर बिल्डिंग के ऊपर एक--